सामने एक कांच लगा हुआ है जहां से रोड दिख रहा है रोड में बहुत सारी गाड़ी चलते हुए दिख रही हैं।

लाइटें बहुत सारी लगी हुई हैं।